हां एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें बहुत सारे बच्चे और एक आदमी भी है बच्चों ने तरह-तरह रंग के कपड़े पहने हुए हैं कमरे की--